फादर लोग जो है वो कुछ बाइबिलस पढ़ रहे है कुछ लोग यहाँ पे खड़े है सफेद कपड़े पेहना कर और गले में कुछ मतलब गमछे टाइप डाल कर सीढ़ी पे खड़े है। कुछ लोग--

नट बालटू है मशीन बनाने का काम चल रहा यहां पे ।

यह एक डीएसपी सोडा टी एण्ड कॉफ़ी शॉप है यहाँ सभी प्रकार के चाय हरे वैरायटी की चाय और कॉफ़ी जो होते है वो मिलते है यहाँ पे।

दो रेस्टोरेंट के फोटो हैं वहाँ बॉलपति पंखा वनखा लागल हैं सोफा रहा हुआ हैं सोफा पे एगो बैग रखाल हैं एक आदमी रिसेप्शन पे बैठा हुआ हैं।